जित माइक में पास्टर है वो जो पेअर मीटिंग कर रहे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहोत ही बड़े बड़े बर्गर रखे हुए हैं।

और काउंटर पे अलग अलग कपड़ो को सजा कर रखा हुआ है जिसने--

किताबें मिल जाती है और ये बहोत ही सुंदर तरीके से अपनी जगह डिस्प्ले करके रखे हुए हैं।

ये एक दफ्तर है जिसमें वन विभाग लिखा हुआ है।

और इसमें बाहर जो गमले हैं वो लगे हुए हैं गमले को हरे रंग का पे पेंट किया हुआ है और बारिश का समय है बारिश हो रही है।

ये एक मंदिर है जिसमें बहोत सारे भगवान की मूर्तियों को सजा कर रखा हुआ है।

और एक आदमी जो की पुल के पास में खड़ा है उसने --

सरस्वती माता बना हुआ है एक बच्चा और दूसरे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसपे--

सामान जो कि यहां पे रखा हुआ है और यहां पे --

सामने से इसकी पिक्चर ली गई है बहोत सारे कपड़े जोकि काउंटर के ऊपर--

और काले रंग का गिटार यहां पे रखा हुआ है बहोत ही अच्छा ये गिटार है।